ये एक शॉप है कपड़े की दुकान है सामने तीन शेरवानी रखी हुई है दो शेरवानी है एक जैकेट रखा हुआ है जो एक मल्टी कलर का दिखाई दे रहा है हमें एक ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है उसके बगल में मल्टी कलर फिर से है जो बोहोत ही प्यारा है नीचे बगल में एक स्टैंड रखा हुआ है व्हाइट कलर का नीचे पूरे कारपेट बिछा हुए हैं रेड कलर के।

फोटो में बगल में सिर रखे हुए हैं रेड कलर का गेट है ऊपर व्हाइट कलर के पूरे मंदिर से लगा हुआ है।

अगल बगल में बहोत सारे पेड़ हैं मतलब वेह मतलब छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं जो काफी सुंदर काफी अच्छा लग रहा है पेड़ है बगल में भी--

सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है बाइक लगी हुई है स्प्लेंडर ।